खिड़की के सामने एक व्यक्ति बल्टी के ऊपर चढ़ा हुआ है तथा अगल बगल खुला अस्मान दिखाई दे रहा है।

सड़क के किनारे कई भवन हैं तथा एक भवन का कलर सफ़ेद रंग का है जिसके कई पिलर हैं।

दीवार का कलर गुलाबी और नीले कलर का है तथा खिड़की भी दिखाई दे रही है। बगल में गेट है बहुत बड़ा।

तथा उपर की और खिड़की भी नजर आ रही है जिसके बाहर शीशे भी लगे हैं लोहे भी।

तथा बीचो बीच बच्चो के खेलने के लायक झूले भी लगे हैं और लम्बे-लम्बे खम्बे वाली लाइटे भी लगी है चारो तरफ पेड़ भी हैं।

और एक एक नजारा ग्राउंड भी दिखाई दे रहा है।

फोटो के अंदर बहुत अँधेरा नजर आ रहा है तथा बीचो-बीच एक लाइट से जड़ा भवन दिखाई दे रहा है तथा उपर की ओर इसके लाल लाइट दिखाई दे रही है।

अंदर एक सामने लाइट भी दिखाई दे रही है जो की सफ़ेद दीवार पे है तथा कुछ सामान भी उसके ऊपर रखे हुए हैं लटके हुए हैं।

फोटो के अंदर सामने ब्रिज दिखाई दे रहा है और नीचे टू साइड रोड है।

इसमें बहुत पानी भरा हुआ है तथा चारो तरफ़ आसमान खुला है और पेड़ किनारे-किनारे है और पहाड़ दिखाई दे रहे हैं।